ये भी रेल्वे स्टेशन है जो कि अगल बगल बहोत सारे और बीच मे बरगद का पेड़ है। जो की दोनो साईड झुके--

--और बगल मे बैठने वाला भी है जो नीले कलर हैं और बहोत सारे लोग जा रहे हैं आ भी रहे हैं और माल गाड़ी खड़ा हुआ है।

ये इस साइड छे प्लेयर खडे हुऐं है बोहत सारे प्लेयर्स है और मेरे को ऊपर मटका टाइप से दिख रहा है बोहोत सारे और अगल बगल खिड़कीज़ है।

आंगनवाड़ी टाइप से दिख रहा है जो की मेरे को एक झाड़ू दिख रहा है पोछा लगाने वाला के बाद--

रॉड लगे हुए है उसके अंदर नीले नीले बहुत सारे वो दिख रहे है एंड बगल में एक घास उस है बहुत सारे--